एक इलेक्ट्रॉनिक्स और बच्चों के खिलौनो की दुकान है जिसमें निकोंन नाम का टेप लगा हुआ है एक गमला रखा हुआ है।

कोई बंदरगाह या नाव का नजारा है जहां एक समुद्री नाव या कश्ति रखी हुई है।

जिसपर एक छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे लिखा है सेफ डिजो डिजिट लॉकर्स ।

इसका चेहरा ब्लर है और वाइट शर्ट प्रिंटेड शर्ट और ब्लैक जींस में खड़ा है।

और एक टेबल है जिस पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और एक लैपटॉप रखा हुआ है।

और यह मानो स्कूल है और नीचे जमीन पर पेड़ की छांव में --

कुछ वर्दी में हैं कुछ लेडीज भी हैं कुछ जेंट्स भी हैं और सामने एक किला है या गढ़ है।

जीसमें दो पिलर है जो ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं और दो --

जिसमें कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है।

चल नहीं रही है अपनी जगह पे खड़ी है दिन का समय है आसमान ब्लू है।

और उनके मम्मी पापा है जो उनके पीछे खड़े है फूलों का गुलदस्ता लगा --

और पंखे रखे हुए हैं और जूसर मिक्सर भी रखा हुआ है।

चिड़ियाघर की तस्वीर है एक अंकल है जिनके सफेद बाल हैं व दिन --